जिसमे की एक बहोत ही पुरानी और एक विशालकाय ऊँची इमारत दिखाई पड़ रही है।

और एक सड़क दिख रही है जिसके अगल-बगल कुछ घर ओर वृक्ष दिख रहे है सड़क पर कुछ गड़िया चलती दिखाई दे रही--